एक डेंटिस्ट के रिसेप्शन का चित्र है जहाँ पर दांतों का एक चित्र रखा हुआ है।

अ ओरेंज कलर के गुब्बाड़े भी लगे हुए हैं और कुछ लोग भी दिख रहे --

इस चित्र में रेल की पटरियां दिखाई दे रही हैं उन पटरियों पे काफी सारे ईटे पड़े हुए है। किनारों पर हम लोगों को पेड़ की लम्बी लम्बी कतारें दिख रही हैं।

टेबल पर नेपकिन और अ सोसेस रखे है और अ पिच्चर के एक साइड पर हमें दरवाजा दिख --

एक टी.वी लगा हुआ है। दीवार पर फेसबुक का चित्र बना हुआ है और पीले और नीले रंग के टेबल रखे हुए हैं।